लगी हुई है ब्राउन कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

जिम के दीवाल का कलर व्हाइट है रेड कलर की मैट बिछी हुई है।

सामने ब्लू कलर का बोर्ड है जिस में बंश केटल लिख हुआ नज़र आ रहा है अंदर शॉप में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए है बाहर ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई दिखाई दे रही है।

एक ऊपर रेड कलर के बोर्ड में कोको कोला लिखा हुआ है जिसके अंदर बहोत सारे थम्सअप माजा फ्रूटी बॉटल नजर आ रहे हैं।

यह एक डेरी है ऊपर पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लाल रंग से चार टंडन डेरी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने स्टेज बना हुआ नज़र आ रहा है स्टेज में कलर का चटाई बिछा हुआ है ऊपर बहोत सारे लोग डांस कर रहे है स्टेज के --

में पर्दा लगा हुआ है रेड और ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई नजर आ रही है सामने दरवाजा लगा हुआ है जिसका कलर ब्राउन है।

ब्लैक कलर से स्लीपर्स पैरालाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है।

माता सुंदरी पब्लिक स्कूल लिखा हुआ नजर आ रहा है भुरे रंग का गेट है।

ऊपर सीनिंग में दो बड़े बड़े लाइट जल रहे हैं।

एक ब्ल्यू कलर का बोर्ड नजर आ रहा है जिसमे एस_बी_आई लिखा हुआ हैं।

दो गाड़ी खड़ी नजर आ रही है।

सामने एक टेबल बना हुआ जिसमें पानी बॉटल और आदि कुछ सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।